एक-क प्ले ग्राउन्ड है बास्केट बॉल का प्ले प्ले ग्राउन्ड हो सकता है।

एक बैंक है बैंक जो अभी बंद पड़ा हुआ है उसका शटर लगा हुआ है| सामने बहुत सारी मोटर साइकिल दिख रहे हैं| बेंक का जो लोगो है रेड और येल्लो कलर उसे पेंट किया गया है उसमें वाईट से लिखा गया है।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

सामने ही अ बहुत बड़ा पेड़ दिख रहा है और कुछ लोहे से बना हुआ चीज़ रखी हुई है।

ये चिड़ियाखाना है चिड़ियाखाना में बंदर लोग बैठे हुए हैं और चिड़ियाखाना जो है वो चारो तरफ से अ जाली का बना हुआ है एक बड़ा सा इसमें रस्सी दिख रहा है।

और ये किसी टेबल पे रखा हुआ है। टेबल पे एक अ दस्तर टाइप बिछा हुआ है जो कि ए सिल्वर कलर का है।

पीछे एक पेड़ है बड़ा-सा पेड़ दिख रहा है और शेर है शेर कहीं देख--